लेडीस जेन्स मन है घाँस फूस मन रहाय बादल लागा लहाय खिड़की के कांच कर लागा लहाय और काका मूर्ति बने लागा लहाय ।

यह वीडियो मे हम देखता ह य मिस्त्री अहाय एक ठो गाड़ी एक्सीडेंट होइ के की का होय क के खराब होइ जी है स के बनावत अहय पीछे का मशीन ह के गेट मन ओहंदे खुला आहय।

यह फोटो मा आदमी मन ह लाइन लगाई के कहा जाता ह कोनी कोनी खंबा मन लगाई ल हे कुछु हेलमेट लगाइन के हे आवत ह।